आदमी खड़ा है अ नीले रंग की टी-शर्ट पहन के--

जिसपर बोहोत काई जमी हुई है बोहोत मिटटी जमी हुई है।

पब्बारे के चारों तरफ लोहे की डंडियां लगी हुई है।

पीछे फूलों से बहुत प्यारी सजावट हो रखी है।

एक काले और काले सफ़ेद रंग का द्श्य दिखाई दे रहा है।

होटल के बाहर एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी है और एक स्कूटी --

खड़ी हुई है नीले या काले रंग की गुजरात इनकी ईमारत बोहोत बड़ी है।

एक पीले और लाल रंग की इमारत दिखाई दे रही है।

एक स्विमिंग पूल जैसा दिखाई दे रहा है।

इसके चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है।

होटल का नाम होटल स्वागतम फैमिली रेस्टोरेंट --

उसके बगल में एक प्योर बैक प्योर वेज लिखा है।

भारतीय स्टेट ग्राहक सेवा केंद्र --

शोरूम पर श्यामस लिखा है सुपरमार्केट ।

तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

अ गैप है उनके बीच में पहाड़ी बोहत लम्बी है पहाड़ो पर--

शादी का मंडप दिखाई दे रहा है।

और उस मंडप के हॉल में सफेद रंग की बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

के नीचे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और उसके --

पियानो के पास एक कुर्सी रखी हुई है।

और कमरे में पर्दे लगे हुए हैं भूरे रंग के और दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हुई।

दो दुकानें दिखाई दे रही हैं।

दुकान के बाहर बहुत छोटे-छोटे बच्चों के कपड़े टंगे हुए हैं।

कॉफी बनी हुई है और उर्दू में भी कुछ उस बोर्ड पर लिखा हुआ है।

हरे गुलाबी और नारंगी कलर के हैं।

उनके चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

उन लड़कों ने सफेद मोज़े पहन रखे है।

मैदान में मिट्टी पड़ी हुई है और थोड़ी-थोड़ी घाँस लगी हुई है।

उसी मिट्टी पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

एक फल की दुकान दिखाई दे रही है।

और और एक लड़का खड़ा है।